एक सड़क है | इस सड़क पर बहुत ही भीड़ लगी हुई है | इस सड़क के किनारे पर बहुत सारी दुकानें है।

और इस नदी के किनारे पर बहुत सारे पेड़-पौधे भी लगाए गए हैं।

और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं।

और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ पेट्रोल डलवाने के लिए आती-जाती रहती हैं यह पेट्रोल के साथ-साथ डीज़ल भी मिलता है।

और ई सब संस्था में यह बहुत सारी महिलाओं के अर्न होती है।

यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर मीटिंग करते हैं और यहाँ पे बहुत सारी लाइटें और पंखे भी लगे हुए हैं।

यहाँ एक बच्चा स्टेज पर खड़ा है और माइक पर कुछ बोल रहा है स्कूल को बहोत अच्छे तरिके से सजाया गया है।

इस भीड़ में लोगो को बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं और यहाँ बहुत सारे लोग आते रहते हैं।